और फिर बहुत सारे किचन की सामान है जैसे कुकर है एक दुकानदार है जो की काउंटर पर बैठा हुआ है।

और फिर बस जो है वो वाइट कलर की है और उसके ऊपर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और फिर एक एम्म इसके ऊपर से बहुत सारे तार गए हुए हैं एक एक पुलिस वाला जो एक वो अपनी यूनिफार्म में है ।

फोटो जो है वो किसी स्टेशन टाइप सॉरी एह पता नहीं मुझे क्या है पर उसके अंदर बहुत सारी गाड़ी लगा हुआ है बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और बड़े-बड़े पेड़ हैं शायद आम के हैं।

इसमें छोटे-छोटे जो बॉर्डर के लिए जो पेड़ लगाया जाता हैं वो भी है और उसमें बहुत सारे फूल के पेड़ भी है और फिर उसमे दो वाइट कलर की गाड़ी है एक आदमी खड़ा है एक आदमी बैठा हुआ --

रोड पे एक ही है जिसमें एक एहेम हुम्म इसमें एक मोटर साइकिल वाला जा रहा है और एक आदमी ए जो है वो ऑटो के पीछे से गुजर रहा है।